कोई इंसान खड़ा हुआ है यहाँ पर ग्रे कलर के कपड़े पहन के और लाल कलर का बैग टांग के खड़ा हुआ है यहाँ केले के पेड़ लगे रहे हैं यहाँ पर और काले कलर के सूखे पेड़ पड़े हुए हैं।

ये रखी हुई हैं यहाँ पर सफेद कलर के टाइल्स लगे हुए हैं शरट है यहाँ पर खिड़की-दरवाजे बने हुए हैं यहाँ पर और मुझे यहाँ पर लाइन दिख रही है वाइट कलर की लाइन बनी हुई है।

बैंक के यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पैसे निकाल रहे हैं एक लड़का है जो पढ़ रहा है कॉपी है उसके हाथ में ब्लैक कर का बैग टांगा हुआ है पिंक कलर की शर्ट पहने हुए --

पीले कलर के हाथ में एक झोला-वोला रखे हुए पनी बनी एक अंकल आ रहे हैं जो ब्लू कलर हाथ में कुछ पड़े हुए एक ब्लैक कलर का बैग टंगा --

बच्चे हैं यहाँ पर एक आंटी हैं जो साड़ी पहनी हुई हैं शौल ओढी हुई हैं और जैकेट पहनी हुई है एक अट एक अंट एक लड़की चोटी बाँधी हुई --

यहाँ पर पत्थर दिख रहें हैं हरे कलर के पेड़ दिख रहें हैं काले पेड़ दिख रहें हैं यह पे खम्बा दिख रहा है ब्लैक कलर का और यहाँ पे काले पहाड़ दिख रहें हैं ऑरेंज कलर की पत्तियाँ दिख रही हैं हरे की पत्तिया दिख रही हैं बहुत सारे तार दिख रहें हैं यहाँ पर।

यहाँ पर मल कुछ बना है यहाँ पर पानी के झरना जा है।

चश्मा लगाए हुए हैं हाथ में आठी पहनी हुई है और ये किसी चीज पर पैर रखे हुए हैं पत्थर पे।

लोहे की खिड़कियाँ बनी हुई हैं ब्लू कलर बोर्ड लगा हुआ है केनरा बैंक का यहाँ पे लाल कलर का शटर लगी हुए है सफ़ेद कलर का शटर लगी हुए है तीन बिल्डिंगे दिख रहें है खिड़की दिख रही हैं ऊपर |